बड़ा सा पक्के का रास्ता है जोकि ग्रीन और ब्लाक है सामने में एक पक्के का मकान है जोकि व्हाइट और उम-अ रेड है।

दूर में बोहोत सारी घर बिल्डिंगे छोटी- छोटी -सी नज़र आ रही है सामने में पक्के का रास्ता है जिसमें तीन कार दिख रहे है एक मारुती है एक अ सिल्वर कलर की कार है एक व्हाइट रंग की कार हैं।

बड़ा सा चट्टान है जोकि ऑरेंज ग्रीन ब्लाक है सामने में बहुत बड़ा सा घर है जोकि वाइट कलर का है जि --

और गज के पत्ते कुछ है उसमें डिजाईन करके लटक रहे हैं। साइड में दो जार रखे है कांच के और गुलाब कलर का ये --

और आइसक्रीम के ऊपर कुछ चेरी और किशमिश है कुछ काजू है साइड में एक गिलास दिख रहा है चेक है रेड और वाइट --